और ये कुछ गार्डन का है नीचे कुछ बिछा हुआ है।

और अंगूर भी है और शेव भी है और पपीता भी है और अनार भी है।